ऐसे फोटो में देख सके हम कितनी दुकान दिखन लाग रही हमने।

आर भाई दिवार दीवार का पेंट भी बढ़िया कर रख्या से--

जिसमें बीच में गणेश जी बन रही है और देख सको हो फूल को दे--

और एक आदमी खड़ा है --

पानी ही पानी दिखाई दे रहा है बहुत सारा पानी भरा है और पानी में अड़ंगा सा दिखाई दे रहा है --

आरी अकड़ी सी बन रही है एक जिसमें देख सको घने घर घर बने दिखे हैं।